चित्र में वैराइटीज ऑफ ब्रांड अलग अलग ब्रांड का प्रोटीन दिख रहा है और नीचे में एक टेबल पर रखा हुआ है ये सब।

हमे एक लड़का इंसान दिख रहा है।

यह चित्र हमें एक बुद्ध का स्टैचू दिखा रहा है।

बुद्धा एक मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए हमें नजर आ रहा है।

ये पिक्चर में एक बालकनी व्यू दिख रहा है।

उसके पीछे में बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं और उसके नीचे बुक्स के नीचे बहुत सारे पानी बोतल रखे हमें देखने को मिल रहा है।

पिक्चर में आगे मे बोर्ड लगाया हुआ है।

एक सुंदर सी स्माइली फेस का एक इमोजी लगाया हुआ है।

एक लाइट बल्ब ट्यूबलाइट बल्ब दिख रहा है साइड मे और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है।

चित्र में एक कैफेटेरिया बोल के एक लिखके दिखा रहा है और इस चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है और इस चित्र में इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब दिखाई दे रहा है।

इधर में पोस्टर चिपकाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है एम स्क्वायर अपार्टमेंट और उसके बगल में लिखा हुआ है एम स्क्वायर फिटनेस क्लब ।

चित्र में बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है और इस चित्र में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहा है।

रंग बिरंगे सोफा हमें देखने को मिल रहा है।

अलग अलग ब्रांड के समान अनेक देखने को मिल रहा है।

बड़ा सा ब्रिज दिख रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सारे इंसान बैठे खड़े हुए है।

क साइड में एक मग रेड कलर का कप दिखाई दे रहा है।

टेबल्स भी हैं इंसान बैठने के लिए और साइड में ग्रीन कलर के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी दिख रहे हैं।

शख्स बैठे हुए हमें देखने को मिल रहा है।

ये जगह बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ दिशा मे दिख रहा है।

और इस पिक्चर में जो लड़का हैं उसका टोपी में बॉय लिखा हुआ है और इस लड़का का कपड़ा का कलर ग्रे है।

इसके बगल में हमें दो चप्पले दिखाई दे रहे हैं।

और इस चित्र में जो दो लड़के हैं वो दोनों काले काले काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

पिक्चर में हमें एक बिल्डिंग या एक घर देखने को मिल रहा है।